यहां पर बहुत सारे जानवर हैं।

केक काटने के लिए आगे एक टेबल लगा हुआ है।

बहोत ही सुंदर डेकोरेशन की है।

फिर ग्यारा दिन उनकी पूजा चलती है दिन में आरती रात को भी आरती चलती है फिर विसर्जन--

यह एक ट्यूशन सेंटर की फोटो है ट्यूशन सेंटर पर बच्चे पढ़ने आते हैं।

मच्छर धूल और धूप से बचने के लिए--

टेंट का बहोत सुंदर डिजाइन बनाया गया है।

का कलर सफेद है एक साइड पर एक लाल रंग की गाड़ी भी--

गाड़ियां रश बहुत है जिसकी वजह से ये रुकी हुई है।

ये एक इंस्टिट्यूट लग रहा है।

फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ऊपर छाया के लिए ग्रीनरी --

यह कमल के फूल की खेती है।

बहोत ही सुंदर सुंदर ग्रीनरी है।

डेकोरेशन बहोत ही सुंदर की गई है।

यह फोटो महात्मा बुद्धा जी की है महात्मा बुद्ध बहोत ही --